इसके साइड -साइड में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और इसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उसके साइड साइड में चार बांस लगी हुई हैं।

और इस पानी का अस्तर कम है।

इस रिसेप्शन में होटल बिरसा विहार लिखा हुआ है।

इसके वॉल में एक बड़ी सी घड़ी और वाल फैन लगी हुई है।

इसके साइड - साइड में बहुत सारी पहाड़ और पत्थर है।

इस गार्डन में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे और पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक माल है।

इसमें दो विंडो लगी हुई है जिसके ऊपर परदे लगे हुए हैं।

और एक बिल्डिंग है जिसका कलर येलो और रेड है।

इस घर का कलर व्हाइट और येलो है।

इसके सेकंड फ्लोर में बहुत सारे कपड़ों को हैंग किया गया है।

इसके पीछे विंडो है जिनमें परदे लगे हुए हैं।

इसके साइड साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।